यह आदित्य विजन है। इसमें फ्रिज है गोदरेज है ए.सी. है पलंग है और आयरन भी है।

यहाँ के सारे लोग भक्त लोग दर्शन किए जा रहे हैं।

दस बारह मछलियाँ हैं जो और मछलियाँ मछली दुकानदार मछली बेच रहा है और मछली लेने के लिए बहुत भीड़ है।

स्टील के ड्राम हैं जो खाने बनाने में काम आएगा।